बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं बिल्डिंग के सामने।

आए प्लीज वेयर अ मस्क इसके अलावा यहां पे है फ्रूटी है फंटा है थमसब है।

यहां पे बहुत सारी ल लाइट्स लगी हुई हैं।

ब्रिज के नीचे खड़े लोग दिख रहे हैं।

जो कुछ देख रही है खरीदने की कोशिश कर रही है ग्रीन कलर --

यह मॉल है यहां पे वॉचेस है स्कूल बैग है।

स्टोर मे बहुत सारे खाने की चीजें मिल रही हैं जैसे कि कुरकुरे ब्रेड --

और पास में ही एक लेडी खड़ी हुये है कपड़ों की शॉप भी दिख रही है।

यह एक मेडिकल शॉप है यहां बहुत सारे क्रीम फेस वाशेस सोप --

कैमरा भी लगा हुआ है इसके अलावा स्विच है बोर्ड है चार्जर है।

यहां पे कंस्ट्र कंस्ट्रक्शन को जो लागता है सामान वो है।

टोटल यहां पे पांच चेयर है और दो टेबल लगे हुए हैं।

यह एक डेकोरेशन किया हुआ हॉल है।

जो बैठने वाला सीट है वो पिंक कलर का है बहुत सारे --

एक साइड में बाइक लगे हुए एक साइड में साइकिल लगे हुए पेड़ के नीचे और बादल दिख रहा है और वायर भी है।

जैसे कि एल्बो है और जो हम लेपेटते है ओ टेप हैं।

यहां एक रूम है इस रूम में बेड लगा हुआ है सोफा सेट लगा हुआ है स्विच बोर्ड है।

इसका काम चल रहा है इस बिल्डिंग मे सलाइयां लगी है स्लैब को जैसे वोक होता है वो वोक चल रहा है ।

यहां पे आर्या समाज मंदिर ऐसे बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पे चर्च वाले सिम्बोल दिख रहे हैं ।

और एक माइक मे कुछ बोले जा रहे हैं।

यह एक ऑफिस है ऑफिस के बाहर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

और कलर डोर को लगने ल टच कलर है सारा कुछ एशियन पेंट है।

जो भी सामान लगता है गैरेज को वो सारा कुछ पड़ा हुआ है एक रॉयल एन्यसड बाइक खड़ी हुई है।

दो बसें दिख रही हैं कुछ लोग सोए हुए हैं चेयर हैं चेयर पे ही लोग सोए पड़े हैं।

यहां पे कुछ लोग ज़िम कर रहे हैं कुछ मिरर मे देख रहे हैं।

का फिंगर शो करके दिखाया है और जिम के टूल्स भी यहां पर पड़े हुए --

एक रोड पे खड़े हुए है जो रोड पे खड़ी हुई कार है वो वाइट कलर की है उसमें आदमी बैठा हुआ है।

यह एक शॉप है हार्डवेयर की इस शॉप में टॉयलेट बाथरूम के पार्ट्स मिलते हैं जैसे की कमोड --

यहां पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है रास्ता है काले बादल हैं--